इस कमरे में बहोत सारी फोटो लगी हुई है जो एक दूसरे को गिफ्ट देते हुए दिख रही है।

यह कोई शादी समारोह है जिसमें हमें रंग बिरंगे परदे कुछ कुर्सियां और पंखे दिख रहे हैं इसमें सामने डी_जे भी लगा हुआ है।

के पास एक लड़का खड़ा हुआ है और साइड में खाने के लिए भी मेज के ऊपर रखे हुए हैं।

और एक आदमी ऊपर खड़ा हुआ है जो नीचे वाले को कुछ बता रहा है।

यह कहीं पे मेला लगा हुआ है जिसमें सुबह का टाइम है।

इसमें बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं एक आदमी ने सफेद रंग की टी शर्ट पहन रखी है और उसके पास एक औरत खड़ी हुई है।

सामने दीवार पर एक बलब भी लटका हुआ है।

यह भारतीय स्टेट बैंक है। इसके सामने कुछ लोग लाइन में लगे हुए हैं अपने काम के लिए। इसके सामने दो मोटरसाइकल खड़ी है और एक रेड़ा भी है।

सुबह सुबह का टाइम है जिसमें सूरज की किरने हरे भरे मैदान पर पड़ रही है।

इसमें अंदर जाने के लिए एक गेट बना हुआ है।

जिसमें एक लड़का हाथ में फोन लिए खड़ा हुआ है इस ने काले रंग की पेंट और नीले रंग की टी शर्ट पहन रखी है।